और कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं जो कि सभी लोग--

जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ कुछ कैमरा मैन है जो शादी हो रही है यहां पर फोटो लिए है दूल्हा और दुल्हन की स्टेज --

और कुछ पेंट्स भी रखे हुए हैं बहुत सारे लोहे के सामान रखे हुए हैं कुछ शॉर्ट्स भी रखी हुई हैं।

वहीं पे भी रखी हुई हैं और --

रेड कलर की पेंट हुई है जो कि बहुत सा --

ब्लू कलर की पेंट हुई दिख रही है और --

यह रेलवे स्टेशन यहां पर भी होगा और काफी सारे लोग अपना सामान --

है मै से ही हैं कलर फुल।

पिक्चर में जैसे कि आप देख सकते हैं।

एक ये रूम है जिसमें काफी सारे तरह तरह की टायरें रखी हुई हैं काफी महंगी--

जो कि शादी का अ बहुत अच्छे से ले रहे हैं और काफी सारी लाइटें भी लगे हुए हैं बड़ी बड़ी तीन लाइट भी लगी हैं एक में बड़ा पेड़ --

लगभग बीस से पच्चीस टेंट लगे हुए हैं यहां पर और--

यहां पर पिकनिक में आए हुए हैं और कुछ नीली चार पांच छह वाइट वाइट लगी हुए हैं।

पिक्चर में जैसे कि आप देख सकते हैं एक प्रोटीन पाउडर की दुकान है जो कि जिम करने वालों को--

सिंचाई करता अपने सारे पौधों की और जो कि खेत में जरूरी है।

और बेकरी के सामान बिस्कुट और निरमा।

यह मैसेज भी लिखा हुआ है टाइम टू --

यह फंक्शन कर रहे थे जो कि लास्ट --

सभी लोग खड़े होकर फोटो खींचा रहे हैं और काफी सुंदर--

जिसमें काफी बहुत सारे खंबे लगे हुए हैं जो --

लोहे का टावर बनाया गया है जहां पर काफी सारी टंकिया रखी हुई हैं उसके बगल में एक खंबा भी है।

इसको काफी अच्छे से टमाटर को एक पौधे में बांध रहा है जो कि नीचे ना गिरें और यहां पर--